कुछ कारें का रंग व्हाइट है और कुछ ब्लू कलर की हैं आसपास मुझे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और सड़क भी नज़र आ रही है।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

और बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।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

बिल्डिंग के बाहर मुझे एक गेट नज़र आ रहा है।

यहां पे मुझे कुछ लोग चलते हुए भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे मुझे कुछ शॉट्स भी दिखाई दे रही है और आस पास छोटी मोटी झाड़ियां भी नजर आ रही हैं।

फोन की शॉप है मुझे बहुत सारे कस्टमर भी नज़र आ रहे हैं और फोन बेचने वाले भी मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं।

कार दिखाई दे रही है और कुछ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स भी नजर आ रही है।

आस पास मुझे झाड़ियां भी नजर आ रही है।

बहोत सारे कलरफुल टेडी बियर नजर आ रहे हैं।

नकली हाथी भी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है आसपास मुझे बिल्डिंग और बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

नजर आ रहे हैं और हरी भरी घास दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर शीशे की खिड़कियां भी नजर आ रही है और कुछ लोग बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।